और ये शाम को समय काफी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है।

और ये सभी पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है। .